जहाँ से सूर्य ओदय हो रहा है।

अ ये मैदान में मैदान भी हरा-भरा है जहां की बहोत सारे लोग अपने दौड़ते हैं और क्रिकेट खेलते हैं।

और यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं तो स्नान जरुर करते हैं। अपने स्नान कर के मन को पवित्र करते हैं।

ये डाक घर इटाह प्रधान डाक घर है।

अर् विद्यार्थी लोग यहाँ आके अपना पढाई करते हैं जोकि घर में नहीं हो पाता है।